जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक कार है सफ़ेद कलर की और यहाँ पर कुछ लोग हैं दो लोग काम कर रहे हैं और दो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक मस्जिद बन रही हैं जहां पर बहोत सारी ईटे रखी हुई है।

जैसा कि देख मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक स्टेज है जिसमें बहुत सारी अच्छी सी सजावट है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक दुकान है जिसमें काउंटर पर एक आदमी है जिसने पीले कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

यहाँ पर गाड़ियाँ उतरी हुई हैं और यहाँ पर कुछ दरख्त भी है एक आदमी भी बैठा हुआ है जिसने लाल कलर की टी-शर्ट पेहनी हुई है और यहाँ पर एक टेबल भी है जो चॉकलेटी कलर का है।

और यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक रोड लो रोलर भी है।

पीला है और नीला है गुलाबी है और यहां पर लाल कलर के बक्से भी रखे हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे ये फुग्गे लगे हुए हैं।

ट्रेन का इंतजार करते हुए और ट्रैन की पटरियां भी हैं।

और यहाँ पर एक सीढ़ी भी है जो काले कलर की है और यहाँ पर एक कुर्सी भी रखी हुई है और यहाँ पर एक बल्ब भी लगा हुआ है।

और सफेद है और यहां पर कुछ लोग भी है और पौ--

और कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं एक लाइट का बड़ा सा खंभा है है और यहां पर कुछ दरखत भी हैं अंदर पीले कलर --